सामने एक बरा रूम है रूम में दीवाल का कलर उजला है ऊपर एक पंखा है जो उजला कलर का है।

और कुछ स्विचें भी देखने को मिल रही है ऊपर एक बोर्ड है बोर्ड पर मेट्रो का चित्र है।

और ऊपर कुछ बॉल लगा हुआ है बॉल का कलर पीला है और बहुत सारे जिम करने का मशीन भी है।

एक चेयर हैं काले रंग की हैं और यहां पे एक पानी का टंकी भी है और एक बड़ा मैदान भी हैं।

और कुछ साइकिल भी है साइकिल का रंग काला है साइकिल के बगल में बहुत सारे पेर देखने को मिल रहा है यहां छोटे-छोटे कंकर भी--

और सूर्य का प्रकाश आ रहा है प्रकाश का कलर पीला है।

और यहाँ एक बाल्टी भी है बाल्टी उजला कलर का है और दो लोग भी बैठे हैं यहाँ पर एक न्यूज़ पेपर भी देखने को मिल रहा है।

और एक बड़ा पेड़ है जिसमें लाल कपड़ा बंधा हुआ है और यहां पे बहोत सारे ईटा भी है।

सामने एक बड़ा अ हॉल है हॉल में दो टेंपू है टेंपू का कलर काला है।

और यहां दो चेयर है चेयर का रंग ऑरेंज है।

और ऊपर आसमान है आसमान का कलर नीला है और बहोत सारा छोटा छोटा पौधा--

और छोटा-छोटा घास है यहाँ एक बुढ़िया है बुढ़िया के हाथ में एक झारू है।